यहाँ एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है आदमी ने--

बच्चा है और हाथ में काले रंग का पर्स दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान नज़र आ रहा है पीछे पेड़ों का अधिक पेड़ों का रंग हरा नज़र आ रहा हैं ।

यहाँ एक टेबल रखी हुई है टेबल पर गिलास रखे हुए है गिलास काँच के है टेबल का रंग सफेद है उस पे --